यहाँ एक समुन्दर नदी जैसी लग रही है बहुत बड़ी नदी है एक नद एक नाव में --

और एक साइड घर भी है घर जैसा भी है अ बाहर सड़क भी है।